एक बड़ा सा घर है।

दुकान के ऊपर भूटान प्रिंस लिखा हुआ है।

ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह क्रिश्चियन का कोई स्थान है।

में कुछ तस्वीर लगाई गई है।

आस पास बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं इसे घेरा गया है।

कुछ कुर्सियां रखी गई हैं एक टेबल है।

ये एक बड़ा सा स्कूल है।

बहोत सारे फुल उगे हुए हैं कुछ घर भी सामने नजर आ रहे हैं।

चार टेबुल रखा हुआ है।

बहोत सारे बर्तन रखे गए हैं बहोत सारी चप्पले नजर आ रही है।